एक बस सड़क के उस पार जाती हुई दिखाई दे रही है ऊपर एक बोहोत बड़ा सा लम्बा सा ब्रिज बना हुआ है।